सामने रहकर भी कुछ खिलौने हैं।

यहाँ कुछ कचड़े और घास उगे हुए है।

बड़ी से दरवाजे को देख रहे--

इसका रंग नारंगी और सफेद है।

बहोत से चॉकलेट भी इसमें डले रहे हैं।

साथ ही हमें एक्सरसाइज के लिए कुछ मशीनें नजर आ रही है।

कुछ पेड़ भी हमें यहां पर नजर आ रहा है।

ये का स्टेज बना हुआ है जिसपर कुछ लोग डांस कर रहे हैं।

सामने कुछ लगी हुई दिख रही है।

साइड में एक और मूर्ती रखी है।

बड़ी बड़ी कांच के टेबल हैं।

जिस पर सफेद रंग के चादर बिछें है एक बड़ी सी अलमारी नज़र आ रही है।

एक चेयर और टेबल रखा हुआ है साथ ही एक खिड़की भी हमें दिखाई दे रही है।

हमें बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

नदी के बीच में बहोत से बड़े पत्थर हैं।

जिसके पानी का रंग मटमैला है।

कुछ मूर्तियां हमे यहां दिख रही--